सब लोग अ ये हारमोनियम वगैरह खरीदने आते हैं जहां पर अच्छी क्वालिटी का समान मिलता है इसलिए सब लोग यही पर खरीदने आते हैं।

यहां पर लोग सुबह सुबह सैर करने जाते हैं।

अ इस पहाड़ी के ऊपर ज्यादा पेड़ नहीं है साइड में छोटा छोटा घास है।

पीछे जो धुंधला पन आ रहा है वो बारिश की वजह से हो रहा--

स्टूल रखा हुआ है स्टूल पर लाल रंग की गद्दी है चेयर पर कलरफुल कपड़ा लगाया हुआ है पीछे दो बोर्ड है एक पर लिखा हुआ है।

तो यहां पर लोग पैसे निकलवाने आते है साथ में हलवाई की दुकान है वहां पर बोर्ड लगा हुआ है।

ये नेचरोपैथी सेंटर है यहां पर शिरोधारा किया जाता है पे जिस पेशेंट को बहुत ज्यादा सर में दर्द रहती है माइग्रेन की प्रॉब्लम है।

और जे साइड में बड़े-बड़े पेड़--

और ये बहुत बहुत बड़ा वॉटर पार्क है तो ये अह रात का टाइम है लाइट जली हुई है।

नीचे वाशिंग मशीन रखी हुई है। साथ में किचन है।

ये काफी बड़ा रेस्टोरेंट है खूब सज़ा हुआ है जहाँ पर खाना बहोत अच्छा मिलता है रेस्टोरेंट के बाहर--

ये दुर्गा माता का मंदिर है जहां पर नवरात्रि चल रहे हैं तो--

एं बच्चों का पार्क हैं तो बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं।